बहुत सारे कपड़े हैं यहां पे यहां पे ये जेट्स के कपड़े मिलते है यहां पे सेल लगी हुई हैं।

पीले कलर के भी कपड़े दिख रहे हैं।

ऑटोमोबाइल भी लिखा हुआ है यहां पे कांटेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है।

ऊपर आसमान भी दिख रहा है और यहां पे आप देख सकते हो यो ब्लैक ब्लैक और पीले रंग की पट्टी दिख रही है।

यहां पे ये एक औरत है ये डांस कर रही है।

यहां पे आप देख सकते हो सी_एस_बी_जी लिखा हुआ है।

और यहां पे आप देख सकते गुब्बारे दिख रहे हैं। यहां पे रेड रंग के गुब्बारे हैं। लाल रंग के गुब्बारे हैं।

मिलते हैं यहां पे सूट सूट बिक रहे हैं यहां पर चारों तरफ--

यहां पर रिलाइंस मेट प्लॉट्स लिखा हुआ है यहा वर्क हाउस लिखा हुआ लीजिंग लिखा हुआ है।

ये कच्चा मकान है दिख रहा है यहां पे देख सकते हो।

और यहां पे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं।

यहां पे आप देख सकते हो कुर्सी--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

देख सकते हो आप चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वहां पीछे घर से भी दिख रहे हैं और यहां पे ये --

बड़ों की भी साइकिल दिख रही है यहां पे अर रंग बिरंगी साइकिल दिख रही यहां पे आप देख सकते हो--

और ये होटस होटल है यहां पर देखने रहे हैं बहोत अच्छा लग रहा है।

और ये मुस्लिम आदमी है यहां पे सिर पे टोपी रखे नमाज पढ़ रहे हैं।